और इसकी छत पे दूर-दूर लकड़ियाँ है जिसमें से ऊपर से धुप आती हुई दिख रही है।

और छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए है पास में--

और छोटी-छोटी और भी प्रतिमाये दिख रही है और चार--

बिम से बने है और ऊपर छत डली और किसी तरह की कोई दीवार नहीं हैं। तीन तरफ से छोटी- छोटी दीवार बनी हुई है ।

उधर दो वाइट कलर के लाइट लगे हुए दिख रहे है।

बॉल्स टंगे है पीले आसमानी और लाल कलर के--

शर्ट पहना हुआ लड़का बैठा हुआ है नीचे भी कुछ जेंट्स खड़े हुए बैठे हुए है शॉप पर --

और सामने का पोरसन जो किसी रेलवे स्टेशन के पास का है ।

और एक सफ़ेद कलर की कार जा रही है जिसका पिछला भाग दिख रहा है।

और उनके पीछे की तरफ में बहुत ही घना और बड़ा पहाड़ भी दिख रहा है ।

यहाँ पर महावीर स्वामी की दो प्रतिमाएँ बनी हुई दिख रही हैं।

एक सफ़ेद कलर की चेयर रखी हुई है।

पहाड़ के ऊपर घास और छोटे पौधे है।

साइड में एक फ्रिज रखा है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स रखे है कोल्ड ड्रींक फ्रिज रखा हुआ हैं।

जिसमें जिसकी छत नीली कलर की है।

जिसमें स्टेशनरी का नाम वहाँ पे बिकने वाले प्रोडक्ट्स की लिखा हुआ हैं।

क्यूंकि बहोत अच्छी झाड़ियाँ है गार्डन की जो कटिंग में की गयी है जो दिख रही है ।